यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं लाइट का खंभा दिखाई दे रहा है एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहै है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पे--

उधर सीढियाँ दिखाई दे रही है पेड़ झाड़ दिखाई दे रहे पेड़ झाड़ मे पिंक कलर के फूल लगे हुए है ऊपर मकान दिखाई दे रहे कुछ गमले टंगे हुए --।

पानी की एक झील बना हुआ है आसपास चट्टान बनी हुई है पेड़ दिखाई दे रहा है उसमें ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कुछ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में दिखाई सिल्वर कलर में चट्टानें दिखाई दे रहे है।

बड़ा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है वाउंडरी दिखाई दे रही है हरे-भरे पेड़ झाड़ दिखाई दे रहे हैं। आसमान दिखाई दे रहा है मिट्टी दिखाई दे रही है।

फ्लाइट का तार दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। मंदिर में कुछ फूल भी बने हुए हैं।

हम् बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्रीन कलर ऑटो दिखाई दे दिया ब्लैक कलर में ऑटो है येलो कलर में होता है।

और एक अलमारी रखी हुई है उसमे कांच दिखाई दे रहे हैं निचे जमीन दिखाई दे रही है।